इस फोटो में ये एक लोप लैपटॉप दिखाई दे रहा है कुछ और भी समान पड़े हैं पास में और ये एक व्यक्ति खड़े है पास में--

इस फोटो में ये कुछ व्यक्ति हैं जोकि कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं।

और उधर साइड में दीवार पे कुछ फ़ फोटो लगी हुई है।

वो भी दिखाई दे रही है उपर ये लाइटें जल रही है।

इस फोटो में ये नल हैं अलग अलग प्रकार के वो नजर आ रहे हैं कुछ सीमेंट के कट्टे भी पड़े हैं नी वो भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें ये देवताओं की मूर्तियां नजर आ रही हैं और ये पर्दे भी नजर आ रहे ऊपर ये पंखा नजर आ रहा है ब्लैक कलर का।

इस फोटो में ये कोई बहुत बड़ी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की इसमें ये फ्रिज कूलर एल_इ_डी टी_वी --

ये एक चावल पड़ी नजर आ रहे हैं पास मे गिलास हैं और ऊपर छत पे एक ओले कलर का कव्वाका नजर आ रहे हैं।

और पास मे और भी कुछ सामान भी पड़ा नजर आ रहा है नजर आ रही है वाइट कलर की --

इस फोटो में ये दो बसें खड़ी नजर आ रही हैं उधर साइड में कुछ घर नजर आ रहे हैं।

इस फोटो मे ये कोई एक ए_टी_म है इसके बाहर एक साइकिल और एक स्कूटी खड़ी नज़र आ रही है।

बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पे कुछ शब्दों में लिखा भी गया है।

इस फोटो में ये बहुत सारी मोटरसाइकिलें और उधर की साइड बहोत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

जो किन्नर के क रही है इसके ब्लैक कलर की टी-शर्ट और नीचे कुछ घाघरा पहना हुआ है।